बहुत सारे लोग हैं जो पानी के अंदर इंजॉय कर रहे हैं और यहां पे बहुत सारे झूले बनाए हुए हैं।

और विंडो को दिखाइ दे रही है।

चेयर रखी हुई है और एक पीछे एक--

और अंदर दो आदमी खड़े हैं बाहर एक--

बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और एक आदमी खड़ा हुआ है ट्रक के ऊपर।

पिंक कलर के कपड़े से डेकोरेट किया हुआ सामने टेबल रखे हुए है।

इस पिक्चर में एक चर्च दिखाई दे रही है जहां पर--

और गुलाबी रंग के फूल रखे हुए हैं और पास में एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है।

जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इस पिक्चर में एक बहोत बड़े दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे बहोत सारे स्नैक्स रखे गए हैं।

खेल रहे हैं और कुछ लोग बैठकर देख रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लाइटें लगी हुई है और सामने दो तीन बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं सामने दो कुर्सियां रखी हुई हैं और सामने--

बहोत सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक में रोड पे बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और साथ में एक बहुत बड़ा--

पेड़ हैं और रोड के ऊपर एक बस येलो कलर की बस खड़ी है।

कुछ लोग इस चट्टान पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पास में एक--

पेड़ लगा हुआ सूखा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है और सूखी हुई घास दिखाई दे रही है।

इस शादी को देख रहे हैं और कुछ लोग--

लगाई हुईं हैं और कुछ लोग जोे बैठे हुएं इस शादी को देख रहे हैं।

लोग खेल रहे हैं और सामने दो बड़े बड़े लाइटें दिखाई दे रहे हैं और आसपास में काले घने--